ये एक शादी हो रहा है यहाँ पर और सब कोई फोटो उठा रहा है।

वो देखिए प्लेट भी लगाया हुआ है अच्छा कटिंग में बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

ये देखिए झंडा लगाया हुआ है सामने में ग्रिल है गज है।

ये एक ऑफिस है उसे हमने देखिए अच्छा अच्छा पेड़ लगाया हुआ है।

ग्रीन कलर का एक गच भी देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है वाइट कलर ब्लू कलर रेड कलर का दीवाल दिला गया है।

ओ गच्म गच से ऊपर ग्रे ग्रीन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है।

टोली भी है और ग्रीन कलर का है दुकान भी ग्रीन --

वो प्लेट्स भी लगाया हुआ है वो इसलिए ज्यादा ग्लेजिंग कर रहा है।

तैयार टेबल भी लगाया हुआ है रेड कलर में --

ये एक नर्सरी है यहां पर बहुत किसीम का फूल--

ये एक पार्क है यहां पर देखिए एक बड़ा सा गेट लगाया हुआ है।

ये दो लड़का खड़ा हुआ है सामने में बिल्डिंग है।

आसमान भी है एक गच भी छोटा छोटा लगाया हुआ है।

यहाँ देखिए बहुत सारा टूल टेबुल चार सोफा सब रखा हुआ है।

ऊपर में लाइट जल रहा है और ब्लैक कलर का ऊपर में उसका कलर दिला गया है।

ये देखिए सामने में फियान रखा हुआ है और पीछे में दरवाजा है उसका सामने में एक सेमेरी रखा हुआ है।

ये देखिए एक खुला मैदान है यहां पर गच्छ भी है खुला आसमान है।

देखिए यहाँ एक टेबल रखा हुआ है ब्लैक कलर चेयार रखा हुआ है।

ये देखिए एक रोड है सामने में आदमी है उस साइड में दो गाड़ी खड़ा हुआ है ए एक --

इधर दो पुतला उधर दो पुतला खड़ा हुआ है।

ब्लू रेड ग्रीन येलो --

ये देखिए लकड़ी में पुतला बनाया हुआ है उसमें देखिए --

ऊपर में लाइट भी जल रहा है डब्बा में भी कपड़ा रखा हुआ है।

ये देखिए दो ठो स्कूटी खड़ा हुआ है दो ठो दुकान है सामने में बोर्ड लगाया हुआ है।

यहां देखिए सब कुछ मिल जाता है ऊपर में तेल रखा हुआ है बिस्किट रखा हुआ है।

साबुन रखा हुआ है हर किस्म का सामान यहीं पर मिल जाता है सब थाक थाक करके रखा हुआ है।

को अच्छा से डेकोरेशन किया गया है बहुत ही अच्छा दिख रहा है हर कलर कलर में टेंट लगाया हुआ है।

ग्रीन कलर में है वो पहाड़ भी सामने में है ग्रे कलर का वाइट कलर का आसमान है।

ये देखिए सामने में दो साइकिल रखा हुआ है बाइक रखा हुआ है दो बच्चा--

तो सामने में देखिए हिरन भी है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

यहां पर कार सब रखा हुआ है यहां पर सारा बहुत सारा कार रखा हुआ ये शोरूम है सामने में देखिए एक गज भी--

सबको पसंद आता है केक बर्थडे हो गया किसी का कुछ भी हुआ केक लेके आ--

ये देखिए एक घर है सीढ़ी है सामने में घर है घर का कलर हो गया --

बैलून भी लगाया हुआ है रेड और वाइट में चारों तरफ लाइट भी जल रहा है।

उस सामने में देखिए साइड साइड में गज लगाया हुआ है स्टॉक सब भी रखा हुआ है।

सब हर कलर कलर का कपड़ा पहन के खड़ा है खेल रहा है बच्चा पार्क में।

ये एक दुकान है यहां देखिए सब कुछ मिल रहा है।

ये देखिए एक छत है ऊपर में रोड लगाया हुआ है छड़ में--

ईंट का लगाया हो रहा है आदमी देखिए सब खड़ा हुआ है।

ये शोरूम है यहां पर ये कंपनी का नाम है हीरो --

यहां पर कांच का गिलास रखा हुआ है इससे चाय का दुकान है।